आसमानी दिखाई दे रहा है कुछ क्रीम रंग में दिखाई दे रहा है कुछ गेरुआ रंग में दिखाई दे रहा हैं ।

मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें छोटी-छोटी सी घास उगे हुऐ हैं।

कुछ रंग यहाँ पर हल्का गुलाबी टाइप का नजर आ रहा है कुछ गेरुआ रंग का नज़र --

यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइट की तारे लगी हुई है और बहोत सारे के पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग साफ़ --

लाइटे जल रही है ऊपर अ पेड़ दिखाई --

ऊपर गेट बनाया गया है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और नीचे की तरफ गेट लगा हुआ है लोहे का जो की बंद हैं।

कांच का दरवाजा लगा हुआ है एक औरत नक़ाब पहने जा रही हैं और आदमी --

कैरेट के ऊपर पेपर बिछा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर संतरे रखे है अनार रखा हुआ दिखाई दे रहा है केला --

और पेट्रोल अ पेट्रोल की मशीन लगाई गई है और --

रंग का यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रीम कलर की दी --

रहे है गेंदा के फूल है जो की कुछ --

उम् इस टाइप के फुल लगे हुए है स्टेज को खूब सजाया गया है लाइटे जल रही है और यहाँ पर --

की तरफ कुछ छोटे - छोटे से पेड़ है उसके पत्ते हरे दिखाई दे रहे है यहाँ पर --

मुझे यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने एक अजीब तरीके के कपड़े पहन रखे है कुछ लाल - लाल सा --

और जिम की सारी मशीने दिखाई दे रही है जिसपे टाइल्स लगा हुआ है काले और सफेद रंग का चिकदार --

यह सामने की तरफ एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए है यहाँ पर कुछ फूल की मालाये ऊपर की तरफ टंगी हुई यहाँ पर लाइटे भी जल रही हैं ।